पोर्ट्स वाइट कलर के हैं।

आगे बत्तियां भी लगी हुई हैं।

हैंडल भी लगे हुए हैं।

ना वापस होंगी ना बदली जाएंगी थैंक यू लिखा हुआ--

के कपड़े सीने वाली मशीन --

सारे लैपटॉप के आगे बैठे हैं।

साइड में खाने पीने की स्टाल्स भी--

खड़ी हैं बसेस का कलर --

इनके श्री तरसेम मंगला जी हैं।

ये लोग न्यूज़ पेपर --

इस सड़क के पास--

क्रेन मिट्टी निकाल कर--